यहां हम देख पा रहे हैं ये हैं एक अरावली गर्ल्स पी_जी होम है आप खुद देख लीजिए काफी बड़ा सारा हैं ये।

काफी खुल्ला खुल्ला भी है इसका एक गेट ओपन भी है बाहर इसके गाड़ी खड़ी है कुछ न नाचूस स्कूटी बाइक --

यहां हम एक खुली खाली मैदान दिखाई दे रहा है ये एक गार्डन है गार्डन में आप देख सकते हैं टेबल चेयर लगी हुई है।

यहां हम देख पा रहे है यहां पे एक ये रूम है रूम में आप देख सकते हैं काफी प्यारा तरीके से सामान अच्छी तरह व्यवस्थित किया गया है।

यहां आप देख सकते हैं यहां पे एक दरगाह है दरगाह में हम देख पा रहे हैं काफी सारे आदमी यहां पे बैठे हैं।

एरिया है यहां कुछ कुछ घर भी बने हुए हैं यहां एक कार देख पा रहे हैं जो पार्क की है।

और सामने हम देख पा रहे हैं एक लेडीस खड़ी है।

काफी बड़ा सारा ये होटल है साफ सुथरा है प्यारा है गमले हैं छोटे छोटे उनमें पेड़ भी है।

यहां हम देख सकते हैं यहां एक मंदिर है मंदिर में आप देख सकते हैं काफी बड़ा सारा है तो कुछ लेडीसें यहां पर हैं।

मैजिक एक यहां है अमूल कि ये बेकरी है यहां पे काफी अच्छी वैरायटी यहां पे आइसक्रीम वगैरा सब मिलती है।

इंजीनियरिंग है। यहां देख लीजिए काफी बड़ा सारा इसका गेट है। एक आधा गेट इसका खुला है और काफी बड़े-बड़े पेड़ हैं अंदर आप देख सकते हैं। एक बस भी बाहर खड़ी--

यहां पे कुछ मॉडर्न लेडिस है जो की सामने की ओर आ रही है एक अंकल है जो भी आ रहे है उनका चेहरा हम नहीं देख पा रहे है काफी खुला हॉल है ये --

यहां हम देख सकते हैं यहां पे खाली मिदान है ये जंगल है।